ये एक टी.वी का दुकान है जहाँ पे बहोत सारी एल.इ.डी रखी हुई है।

खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है जिन्होंने जिसके ऊपर छाता लगाया हुआ है।

लगा हुआ है जिसपे राजकीय --

और आप सामने देख सकते हैं नीचे की जो जगह है वो धूल वाली है।

और ए.टी.एम. के सामने बहोत सारे लोग लाइन लगा कर खड़े हुए हैं।

राणा टी स्टाल लिखा है और राणा जनरल इस्टोर लिखा हुआ है।